सामने उसके एक आदमी खड़ा हुआ हैं।

और भी पीछे कुछ स्टेचूस हैं। जिनपे पिंक --

पे रेलिंग लगी है। सामने रोड जा रहा है जहाँ-- .